दो सफेद गाड़ियां हैं एक तीन बस है यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है।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

बहुत ही अच्छा सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है फोटो बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके खींची गई है यहां पर--

बहुत ही अच्छा वातावरण है बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है दो सफेद कलर की गाड़ियां हैं एक मोटरसाइकिल है।

यहां पर बहुत ही अच्छी तस्वीर खींची गई है।

यहां पर बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल रहा है यहां पर मेडिकल है मां करणी स्टोर जनरल स्टोर नाम भी लिखा हुआ है।

छादर से देखने को मिल रहा है खींचने वाले ने क्या तस्वीर खींची है एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है आसपास में चारों ओर पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत ही एक--

तस्वीर में भी बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पर बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी तस्वीरें लगी हुई है यहां पर --

तस्वीर में भी बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पर बहुत ही--

अच्छा वातावरण भी नजर आ रहा है।

छत दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे है गाड़िया भी दिखाई दे रही है एक चार पाही भी दिखाई दे रही है जिसमें हम सोते है नींद लेते है।

अच्छा सा सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पर बहुत ही अच्छी तसवीर खींची गई है बहुत ही अच्छा वातावरण है।

बहुत ही अच्छा वातावरण है फल फ्रूट भी है केला भी है अनार भी है संतरा है आम है केले है बहुत अच्छी फल फ्रूट की दुकान है।

बच्चे देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा वातावरण के रूप में नजर आ रहा है यहां पर बहुत ही अच्छी तस्वीर ली गई है।

ये बिजली की भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत ही स्कूटर है मोटरसाइकिल है।